यहां पे एक रोड है रोड पे एक कार खड़ी हुई है व्हाइट कलर की उसके पीछे एक रेड कार है।

ये एक उसमें पहाड़ी छोटे-छोटे पहाड़ के टुकड़े नजर आ रहे हैं पोधे नज़र आ रहे हैं पीली घास नजर आ रही है।

ये एक स्टेशनरी नजर आ रही हैं जिसमें कई सारी पेन नजर आ रहे है बैग नज़र आ रहे है बुक्स नज़र आ रही हैं ।

ये एक खेल स्टेडियम का मैदान नज़र आ रहा हैं जिसमे कई सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा का ड्राइंग बनी हुई है पिज़्ज़ा लिखा हुआ है। कई सारे मल्टी कलर के बलून्स लगे हुये हैं। अमूल का बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है।

एक चावल का खेत नज़र आ रहा है जिसमें हरे कलर की घांस दिखाई दे रही है और आस-पास किनारों पे हरी अ सफ़ेद और भूरी घांस दिखाई दे रही है।

ये एक व्यक्ति भेड़ा नज़र आ रहा हैं ।

इसमें एक सड़क दिखाई दे रही है और कई सारे लोग ऑटो के पास दिखाई दे रहे है कुछ लोग साईकिल से जाते हुए नजर आ रहे कुछ लोग पैदल अदर जी प्रोडक्टशन करके कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एक ये मन्दिर जैसा गेट दिखाई दे रहा है।